ट्रैक्टर के ऊपर एक छाता जैसा बनाई गई है।

इस चित्र में एक ट्रक का पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसपे बहुत सारे रॉड --

इस चित्र में बहोत सारी बेसिन दिखाई दे रही हैं।

स्कूटी का कलर लाल और काला दिखाई दे रहा है सामने की दीवार पे शीशा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

जो की मानसरोवर स्टेशनरी शॉप है।

नीचे की तरफ दुकान में टेबल रखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके उचर ऊपर कुछ सामान है।

छत पे लोहे का ड्रॉ लगाया हुआ दिखाई दे रहा है।